यहाँ पर किसी कपड़े की दुकान के अंदर का द्रश्य दिखाई दे रहा हे जहा पर रखे पन्नियों मे कपड़े रखे हुए हे ओर कुछ पुतले टंगे हुए हे जिनमे से सब ने स्वेटर पहन रखी हे।

यहा पर किसी सोसाइटी का गार्डन मे कई लोग व्यायाम करते दिखाई दे रहे हे सबने नीले रंग की टाट बिछा रखी हे सब एक मुद्रा मे दिखाई दे रहे हे।